नदी में पानी गिर रहा है पहाड़ है।

जो की पार्क में है।

उजला काला ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है।

लाल हरा ब्लू पीला कपड़ा पेहेन कर के --